एक नीला कलर का बोर्ड लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ है ऑफ़िस ऑफ़ द सरकार ऑफिसर दिस फॉर रेवेन्यू सरकार ।

इस चित्र में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं बलून भी लगे हुए हैं पिंक वाइट ।

इस चित्र में पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है ब्लू और रेड और वाइट कलर का एक ऑटो भी खड़ा हुआ है पीले कलर का उधर बहुत सारे ले--

इस चित्र में एक मस्जिद दिखाई दे रही है जो वाइट कलर के ग्रीन कलर के पेड़ पौधे भी ब्लैक कलर की टंकी रखी हुई है।

इस चित्र में एक दो अंकल दिखाई दे रहे हैं जो बैलगाड़ी रखी हुई है रेड कलर की।

इस चित्र में तीन अंटी हैं चार अंटी हैं खड़ी हुई हैं एक यलो कलर का घर दिखाई दे रहा है विंडो ब्लू कलर की हैं।

इस चित्र में एक गेट दिखाई दे रहा है वाइट कलर का दो लड़के खड़े हुए हैं रेड कलर की लाइट में लिखा हुआ है अल अमन।

इस तो चित्र में एक ऑफिस दिखाई दे रहा है एक जींस भी इधर पंखा लगा हुआ है क्रीम कलर की टेबलें हैं रेड कलर की कुर्सी है।

इस चित्र में ब्लैक कलर के गेट यलो कलर का पुताई और ऊपर बहुत सारे फोटो लगी हुई हैं इधर पिलर पिंक कलर के हैं तीन सीढ़ियाँ भी हैं।